इस इमेज में सामने यहां पर एक हवेली दिखाई दे रही है और यहां पर टेबल कुर्सी रखे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में सामने देखीएगा यहां पर एक बड़ा सा किला दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है जहां पर अंदर एक व्यक्ति बातें करता नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा एक गेट बना दिखाई दे रहा है और एक लड़का खड़ा हुआ यहां पर दिख रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रखियो की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कहीं सारे रंग बिरंगी राखियां लटकता नजर आ रही है।

इसी इमेज में देखिएगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पर सामने लाइन से कुछ का बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर छोटा सा पार्क और कुछ बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर बेड पर एक रजाई रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर सामने देखिएगा कुल कुछ बच्चों के बैग रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा बाउंड्री के पास में दो बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहां पर गमलो में पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे टेबल कुर्सी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक टॉय शॉप दिखाई दे रही है और अंदर ढेर सारे खिलौने यहां पर नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर सोफे रखे हुए हैं और टेबल पर पानी की बोटल और खाने का मेन्यू नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ दुकानें है और कुछ लोग शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहां पर एक ईमारत दिखाई दे रही हैं जहां पर दरवाजे और ऊपर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ खाने के पैकेट्स और एक ट्रॉली भी दिखाई दे रही है।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

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर दुकाने दिखाई दे रही हैं और रात का समय है तो लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक तार को दिखाई दे रहा है और बड़ी सी राम भगवान की मूर्ति भी यहां पर नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्टेज़ दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर एक बेड के ऊपर तकिए और कंबल रखा हुआ नजर आ रहा है।